एक स्टूल रखा हुआ है जो पीला और ब्लैक कलर से पुता हुआ है।

और इसका शटर हरे कलर से पुता हुआ है और शैंपू वगैरह--

और इसमें शैंपू वगैरह भी टंगे हुए हैं और दो फ्रिज भी रखे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक स्टेशन दिखाई दे रहा है जोकि पूरा खाली पड़ा हुआ है साफ-सुथरा--

इस चित्र में हमें एक शोरूम दिखाई दे रहा है जिस पर बच्चों के स्कर्ट --

और हैंगर पर फिर कपड़े टंगे हुए हैं।

रखे हुए हैं और इस दीवार पर पिंक कलर का--

और एक पीछे साड़ी पहन के लड़की खड़ी हुई है जो कि झंडा पकड़े हुए है।

और एक ब टेबल पर बिसलेरी बोतल रखी हुई है।

इस हॉल में बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग जल रही है।

और एक लोहे की रेलिंग पर एक अंकल भी खड़े हुए हैं।

ये एक बगीचा दिख रहा है इस बगीचे में पीले गुलाब लगे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक छोटी सी दुकान दिखाई दे रही है।

और इसमें दो फोर भीलर कार खड़ी हुई हैं और--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

और यहां सामने बाईकें खड़ी हुई है और एक फोर व्हीलर कार भी खड़ी हुई है।

और बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है और यह मेन रोड पर एक मस्जिद है मीनारे पर सफ़ेद और हरी कलर की लाइटें लगी हुई हैं।

लगा हुआ है एक बड़ा पेड़ और एक छोटा पेड़ लगा हुआ है।

इस चित्र में हमें एक घना जंगल दिखाई दे रहा है जोकि हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ है और उसके नीचे एक नदी दिखाई दे रही है।

और चेयर रखी हुई हैं वाइट कलर की।